इस तस्वीर में संतरे रंग की दीवाल देखी जा सकती है।

सजावटी फूलों को गेटों पर कारीगरी तरीके से सजाया गया है।

छत का रंग सफेद और दीवाल का रंग नीला है।

रूम के बाहर बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में बादल देखे जा सकते है आसमान का रंग नीला है।

स्टेशन पर बहुत सारी तारें लगी हुई हैं।

लोहे की कारीगरी देखी जा सकती है।

आसमान नीला और बादलों से भरा है।

घर की बाउंड्री जो लाल रंग से घीरी हुई है देखी जा सकती है।

रेलवे स्टेशन की छत टीने से बनी हुई है।

बहोत सारी लाइटे देखी जा सकती हैं।

मसाला भी देखा जा सकता है।

आदमी ने टी-शर्ट और जींस पहना हुआ है। बहोत सारा पहाड़ --

मंडप में दूल्हे की कुर्सी देखी जा सकती है।

दुकान में एक कुर्सी देखी जा सकती है।

कुछ चिकन जिन पे मस्टर्ड सॉस लगा हुआ है देखे जा सकते हैं।

दीवाल की छत नीले रंग की है।

धरती पर बहुत सारी घास देखी जा सकती है।

यह तस्वीर किसी ग्राउंड की है ग्राउंड खाली है।

बहोत सारी बिल्डिंगे देखी जा सकती--

आसमान में बादल देखे जा सकते है।

पहाड़ देखा जा सकता है।